बहुत सारे माले है बहुत सारे स्टीकर वगैरह है जो बहुत खूबसूरत--

बड़ा पर्वत है इसके पीछे बहुत गहरा पानी है।

जो काफी मजेदार लग रहा है फिसलनपट्टी आए है जहा पे बोहोत सारे बच्चे है फिसलते है।

सब चीज मिल जाएंगे और यह गांव में भी उपलब्ध होता है और लोगों को इससे बहुत मदद मिलती है गांव में रहने से।

यह एक बहुत ही अच्छा तरीके से सजाया हुआ एक भवन लग रहा है इसको बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया गया है।

रेड कलर का लहंगा का ड्रेस और ऊपर में ब्लैक शर्ट पहना हुआ है जिससे बहुत ही ज्यादा--

गेट के दरवाजे के साइड में है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है इसको बनाने में--

यहाँ पर खुदाई हो रहा है जो एक बहुत बड़ा सा चाइना मशीन हैं।

उँ इलेक्ट्रॉनिक समान होंगे इस इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेच करके अपने घर का गुजारा कर करते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं इस सामान को खरीदते हैं।

फोन खरीदते है जिओ एयरटेल सिम में रिचार्ज कराते है और बहुत चीज का आनंद उठाते है।

यह पूल बहुत ही अच्छा बहुत ही लाभदायक पूल होता है एक गाड़ी को ये पानी के ऊपर से पार करना बहुत ही हार्ड काम हैं।

इसके जरिए इधर-उधर दिख जा रहा है इसे घर के बीचों-बीच एक कुआं खोदा गया है।

यह एक जंगल के बीच में एक बुलेट --